और बाहर काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।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

और बाहर एक स्कूटी और गमले रखे हुए हैं।

इस दृश्य में बहोत सारे वर्कर दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी एक्सपिमेंट कर रहा है और सभी लोग उसे देख रहे हैं।

और ऊपर शेल्टर है करकट का और ट्यूब भी दिखाई दे रहा है।

और उसमें कहीं कहीं पर फिरोजी कलर भी किया गया है।

इस दृश्य में एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि लकड़ी के सेल्फ के में रखी हुई है।

एक छोटा सा बोर्ड भी दिखाई दे रहा--

इस दृश्य में बहोत सारे हरे भरे घास दिखाई दे रहे हैं।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

और बहुत सारे और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बाइक्स है और कुछ स्कूटियां हैं।

दोनों आदमी ने नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

जोकी बेंच पर अपनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं कागज की मदद से।

और सेरों टेप भी रखा हुआ है और फेविकोल भी।

जिसका कलर लाल है और उसमें काले कलर का तार भी है।

सोफे भी लगे हुए हैं और नीचे मार्बल भी लगा हुआ है।

ऊपर एक लाइट भी लगा हुआ है।

और एक ग्रीन कलर की टेबल और चेयर भी दिखाई दे रही है।

और फैन भी दिखाई दे रहा है।

जमीन में कुछ कार्टून्स भी--

और क्षण भी निकली हुई है।